आर_एम_डी कॉलेज एंड हॉस्पिटल इसके--

और शीशा लगा हुआ है बाहर एक रेड कलर का सामान रखा हुआ है।

झूला लगा हुआ है बगल में छोटे छोटे गमले नजर पड़ रहे --

और एक झुमर लगा हुआ है यह एक हाल जैसा है बहुत सारे परदे लगे हुए हैं।

बहुत सारे मोबील के डब्बे रखे हुए हैं।

मकान नजर पड़ रहा है जिसमें बाहर में एक झूला लगा हुआ है।

और सब्जी नजर पड़ रहा है बहोत सारे मो --

एक आदमी हाथ में ट्रे ले के जा रहा है।

इस फोटो में बहुत सारे टीशर्ट दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में ये दो लड़की फो सेल्फी लेते हुए नजर पड़ रही है।

एक बैनर लगा हुआ है उसपे द सिटी कैफे लिखा हुआ है।

लोहे के खंबे लगे हुए है एक आदमी ठेला चला के जा रहा --